जिसमें बहुत सारे सामान रखा हुआ है ऊपर टाउन एंड बाजार लिखा हुआ है।

और सामने पादरी खड़ा है उसके हाथ में बाइबल है उसके आस-पास बहोत से लोग --

और उसका गेट बहोत ही रंग बिरंगा है।

ये घर हरे रंग का है ऊपर एक रेलिंग भी लगी हुई है।

यहां पर पीले रंग की टोकरियां है उसमें मछलियां पड़ी हुई है।

और दरवाजों के बराबर में सीढियां जा रही है।

इस चित्र में बोहोत बड़ी दुकान दिखाई गई हैं जिसका काउंटर बोहोत बड़ा है।

चित्र में एक रसोई सी दिखाई गई है जिसपे बहुत सारे पतीले पड़े हुए हैं।